कोर्स अ है जहां पर अलग-अलग डिपाटमें बनाए हुए है।

एस.बी.आई. बैंक है इसके साथ में एस.बी.आई. ए.टी.एम. भी है।

पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप पे गैस भराई जा रही है।

उसका उसका मैन गेट का फोटो है यहाँ पर एक आदमी खड़ा है ।

पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ के --

कुछ व्यक्ति बाइक ले कर घूम रहे है कुछ स्कूटी कुछ ऑटो उ अच्छा अपनी साइकिल ले कर घूम रहे है।

जैसे ये चल रहा है।

एक साइ साइकिल वाला साइकिल लेकर जा रहा है।